इस पिक मे किसी कंपनी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है तथा उसके टैरिस में कोई काम भी नजर आ रहा है --

तथा चलाने के लिए भी कुछ रखा हुआ है | इसके उ खुला आसमान नजर आ रहा है बहुत सारे पेड़ें नजर आ रहे हैं | इस जगह छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं |